और इसके आसपास बोहोत से पेड़ पौधे हैं और ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर का कलर नीले कलर का है। उसपे कुछ रखा हुआ है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनके मैट का कलर एक की मैट का कलर येलो है।

दूसरी का पिंक है तीसरी का पर्पल कलर है उसके पीछे गेट भी है जो कि ब्राउन कलर का है।

एक आदमी ने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं।

बोर्ड व्हाइट कलर का है उसके साइड में आसमानी कलर के पर्दे टांगे हुए हैं।

सामने लोहे के पाइपों से कुछ बना हुआ है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर एक चौक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर महाराजा अग्रसेन विकास सेवा लिखा हुआ है।

और ग्रे कलर का लोअर है और सामने व्हाइट कलर की कार भी है जिसका ढक्कन खुला हुआ है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कुछ बाइके ऑटो कार भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बच्चे के कपड़े का कलर नीला है और व्हाइट कलर की शर्ट --

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर एक फोटो दिखाई दे रही है।

और छत पर एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

आदमी ने नीले कलर की जर्सी पहनी हुई है।

जिन्होंने व्हाइट कलर की टी शर्ट ब्लैक कलर का लोअर डाला--

यह एक चित्र है जिसमें मुझे सामने की ओर दो स्टैचू दिखाई दे रहे हैं।

एक स्टैचू ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

एक आदमी ने सफेद कलर की शल्ट और नीली कलर की जींस पहनी है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की और कुछ कारे दिखाई दे रही है एक कार का कलर सिल्वर है दूसरी कार का कलर व्हाइट तीसरी कार का कलर ब्लू कलर है उसके साइड में एक व्यक्ति खड़ा है जिसके कपड़ों का कलर व्हाइट कलर की शर्ट है।

एक डिब्बे का कलर लाल और सफेद है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं।

एक सामने की ओर पीले कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।